जिसके आगे काफी सारे महिलाएं और पुरुष खड़ी हैं।

और इस बिल्डिंग का कलर ग्रे है।

पुल के ऊपर काफी सारे नेट के लोहे की एक बटन लगी हुई है।

मिट्टी की जमीन है।

बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमें कई प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं।

रोड के किनारे दो शॉप हैं।

और इस शॉप ब्लैक कलर का है।

और काफी रंग बिरंगे कलर से पेंटिंग की हुई है।

जिससे मिट्टी की खुदाई हो रही है चार लोग खड़े हैं और पीछे दो-तीन बिल्डिंग है और कुछ पेड़-पौधे हैं।

और काफी सारे टेबल है।

बीच में एक छूमर लगा हुआ है।

और काफी सारे बेड लगे हुए हैं।

रेड कलर का कुछ सामान रखा हुआ है।

इन पेड़-पौधों का कलर हरा है।

और इसमें काफी सारे बुक्स रखे हुए हैं।

यह एक दुकान है।

यह एक धार्मिक स्थल है ।

जिसमें दो पिलर लगे हुए हैं।

ये यीशु मशू का स्टैचू है।

और एक दीप है और बहुत सारे फूल रखे हुए हैं मलटीकलर--

एक बच्चे ने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पेहेन रखी है और ब्लैक कलर के पैंट पेहेन रखी है।

दीवाल पे पंपलेट लगे हुए हैं।

और मकान के नीचे बहुत सारे दुकान है।

जिसमें अ शटर लगे हुए हैं और काफी सारी बाइक खड़ी है।

और एक साउंड वॉक्स रखा हुआ है।

यह एक दुकान है यह दुकान किराने की है।

रोड है रोड पे गाड़ियां खड़ी है।

इसमें लंबे-लंबे छड़ लगे हुए --

ये तीन तारे यहां से जा रही हैं।

मकान के नीचे तीन शॉप है।

एक बाइक पे एक लोग सवार है उसके आगे एक बिजली का खंभा है और एक ठेला खड़ा है।

होटल में बेड लगे हुए हैं।

और बहुत सारे कैमरे रखे हुए हैं।

एक लाइट की बॉल बनी हुई है बैलून लगे हुए हैं ।

यह एक डार्क घर है.

जिसमें काफी सारे टेबल लगे हुए हैं और काफी चेयर लगी हुई है।

रेस्टोरेंट का फर्श का कलर वाइट है।

और इसमें काफी सारे बल्ब लगे हुए हैं और काफी सारी खिड़कियां हैं।

यह सब्जी की दुकान है जिसमें खीरा मिल रहा है भिंडी मिल रही है।

गाजर मिल रहे हैं चुकुंदर मिल रहा है।

बालून का कलर रेड है।

और दो-चार लोग बैठे हुए हैं।

जिसमें केला लटका हुआ है सेब रखे हुए हैं।

चीकू रखा हुआ है संतरा रखा हुआ है।

इसमें गोलाकार ऊपर बना हुआ है।

एक लड़का दरवाजे की ओर जा रहा है।

जिस पे सदर अस्पताल गोपालगंज लिखा हुआ है।

जिसमें पूजा हो रहा है।

यह रोड के किनारे एक नदी है।

इसका पानी नीला कलर का है।

गली में बहुत सारे बच्चे--

दो वर्कर लगे हुए हैं।

गार्डन में बहुत सारे छोटे-बड़े पौधे लगे हुए हैं।

कुछ लोग पार्क में बैठे हुए हैं।

यह एक मछली की दुकान है।

जिसमें अनेक प्रकार की मछली है।

कुछ मछलियां छोटी हैं कुछ मछलियां बड़ी हैं।

बंदा बेंच पर बैठा हुआ है।

बहुत बड़ा इंजन लगा हुआ है।

और पीछे लोहे के दरवाजे हैं।

और एक मकान दिखाई दे रहा है।

एक बच्चा कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहा है।

जिसके सामने दो बाइक खड़ी है।

और बगल में एक मकान है।

जिसमें काफी सारे सामान मिल रहे हैं।

कुछ पिंक कलर का बेबी का सामान रखा हुआ है।

कलर का सामान मिल रहा है।

और पीछे एक घर है जिसमें एक बल्ब जल रहा है।

यह एक छत है छत पर बच्चे योगा कर रहे हैं।

यह एक दुकान है यह दुकान स्वर्गीय नंदू जी कचरी वाले की है।

दुकान के अंदर दो लोग हैं और दुकान के बाहर एक लोग खड़े है।

सामने सब्जी की दुकान है जिसमें मशरूम रखा हुआ है।

इसमें काफी सारे अंगूर हैं।

पेपर में एक महिला की प्रतिमा दिखाई दे रही है।

यह एक बेकरी की शॉप है।

काफी सारे केक मिल रहे हैं।

जो की काफी लंबे-लंबे हैं।

और एक बुजुर्ग महिला पैदल चल रही है सड़क पे।

दो लोग वॉक कर रहे हैं।

यहां एक पेट्रोल पंप है।

और लाइट लगी हुई है पेट्रोल टंकी के ऊपर--

बेकरी का सामान मिल रहा है।

इस बिल्डिंग के आगे एक पंपलेट लगी हुई है।

बीमार बाजार सुपर मेट .

और इस बिल्डिंग में शीशे लगे हुए हैं।

दो लोग जमीन पर लेटे हुए हैं।

यहां एक फंक्शन हो रहा है।

और इस फंक्शन में दो-दो पास कर--

वो वाश का डेकोरेशन है।

दो साइकिल रखी हुई है एक मोटरसाइकिल रखा हुआ है।

यह एक पार्लर का दुकान है।

और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे भरे हैं।

परती ऐसी पड़ी हुई है।

अब कुछ जमीन हरी भरी है।

यहां पे छोटे-बड़े पौधे हैं।

यहां पे बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं एक दीवार पे।

यह फोटो कई लोगों का बना हुआ है।

और एक डस्टबिन रखी हुई है।

जिसमें एक सोफा लगा हुआ है सोफे का कलर वाइट है।

इस घर में एक ए-सी लगा हुआ है और दो कटेल लगे हुए हैं।